यहाँ पर बोहत सारे डमी पुतले दिखाई दे रहे है यह पुतले घोड़े के है।

अगल-बगल में बोहत सारे पेड़-पौधे है।

सामने की तरफ कुछ रेलिंग दी हुई है रेलिंग के इस तरफ में भी--

निचे सफ़ेद रंग की टाइल्स लगी हुई है बगल में ही एक बड़ा सा लेडीज का --

और जिसको सफेद रंग जिसे जो सफेदा रंग की है और पीछे की तरफ सफ़ेद रंग की पंडाल दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने जैकेट पहन रखी है और उसने एक टोपी भी लगा रखी है।

यह रात्री का समय है ऊपर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई है सामने एक महिला खड़ी हुई है जिसने --

करंट दिखाया गए है और निचे तराजु भी रखी हुई है।

यहाँ पर कई लड़को दो लड़को को एक साथ देखा जा सकता है जो की गेट के दूसरी तरफ एक रूम के अंदर दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बोहोत सारी लोगों की भीड़ को एक साथ दिखा जा सकता हैं।

अगल-बगल में बोहोत सारे पेड़ है सामने बोहोत सारे धूल गड़दा उड़ते हुए नज़र आ रहे है।